और यहाँ ढेर सारी टेबल लगे हुए हैं ब्लैक कलर की कुछ कुर्सियाँ दिखाई दे रही है जो--

और सामने कुछ बिस्कुट के पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट हैं रेड हैं ग्रीन हैं।

ग्रीन कलर का है इसके आसमान का कलर ग्रे है और कुछ व्हाइट कलर की लाइटें लगी हुई है।

और यहाँ ढेर सारे सामान दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंगे हैं व्हाइट कलर की है रेड है मरून है पिंक है।

यहाँ हमें एक रूम दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और इसमें पंखे दिखाई दे रहे हैं दो पंखा दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की है इसकी खिड़कियाँ की कलर ब्लैक है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर की है और--

और सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो ब्लैक और व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

ब्लैक कलर का है और ग्रे कलर का इसमें ढेर सारी लाइट लगी हुई है येलो कलर की और सामने--

--जो पीला कलर का है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

जो रेड कलर का है और पिंक कलर का है और वाइट कलर का है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ब्लू और वाइट कलर का कपड़ा पेहना हुआ है।

और कुछ अ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे ग्रीन कलर के छोटे-छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं जो--

यहाँ हमें ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के हैं और--

फूलें दिखाई दे रही हैं जो पिंक कलर की है और एक घर दिखाई दे रहा है ग्रीन और रेड कलर का है।

और कुछ-कुछ छोटे-छोटे घर दिखाई दे रहे हैं जो पीला कलर का है व्हाइट कलर का है और पीछे एक टावर दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का इसमें ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं खेलते हुए जो--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

यहाँ हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें हरा भरा पेड़-पौधे हैं और कुछ--

और कुछ पर्दे लगे हुए हैं जो ब्लू कलर का है और व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और सामने एक बड़ी सी टेबल दिखाई दे रही है जो--

यहाँ हमें एक सड़क दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर का है और सामने की बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वाइट और रेड कलर के इसके दरवाजे का कलर मरून है--

और एक पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का आसमान का कलर नीला है और सामने का बोर्ड दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का है और कुछ-कुछ छोटे-छोटे--

पेड़ पौधे दिखाई देरे गमले दिखाई देरे जो ग्रीन कलर का है ।

रेड कलर का फूल है और ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो रेड और ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं ।

यहाँ हमें एक बड़ी सी स्कूल दिखाई दे रही है जो पीला कलर का है और रेड कलर का है और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है वाइट कलर की और इसके --

और इस दुकान का कलर पीला है और ढेर सारी बुक्स दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है सामने का आदमी दिखाई दे रहा है जो--

यहाँ हमें एक रूम दिखाई दे रहा है वाइट और ब्लू कलर का है और इसमें ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो--

नीला है ग्रीन है और पिंक है और यहाँ ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो--

और इसके सड़के का कलर वाइट है और ग्रे कलर की है ।